एक कार का कलर हमें ऑफलाईट दिखाई दे रहा हें । और हमे यहाँ पर बोहत सारे लोग खडे दिखाई दे रहे हें । लोगो के हात मे अपनी बाईक दिखाई दे रही हें । और बोहत सारे पेड दिखाई दे रहे हें ।

वहाँ पर एक बहोत {बहुत ही खाली-खाली जमीन दिखाई दे रही है और हमें यहाँ पर एक खटिया दिखाई दे रही है जो की एक कोने में खड़ी दिखाई दे रही है।}

हमें यहाँ पर एक बहोत ही बढ़ियां मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर के ऊपर हमें एक बहुत ही बड़ा लाइट जलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमें यहाँ पर बहुत ही बड़ा कम्पाउण्ड दिखाई दे रहा है। और हमे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत अच्छे लग रहे हैं ।

हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दुकान दिखाई दे रही है। दुकान में का छत का कलर हमें सफेद दिखाई दे रहा है। दुकान की दीवार का कलर भी हमें सफ़ेद नजर आ रहा है। और हमें यहाँ पर बहुत सारे लाइटे दिखाई दे रहे हैं ।